रहा है एक बहोत बड़ा स्कूल है।

बिल्डिंग है और यहां पर बहोत सारे लोग--

दिख रहा है यहां पर एक--

और बहोत सारे पेड़ लगी--

इस फोटो में देख रहे हैं।